यहां पर जो है की मिठाई लड्डू बर्फी काजू किशमिश क्योंकि यहां पे अनेक तरह का लड्डू मिठाई सब मिलते हैं आए ले जाये और ले जाने के लिए संपर्क करे।

यहाँ यह जो घर है जिसका आम जाली लगा हुआ है आगे तो बच्चे गिरे न गिर जाये तो जाली ये साधन द्वारा ऊपर ही रह जाए जाली में अटका हुआ ही रह जाएगा क्यूंकि बच्चे का नुकसान नहीं होगा क्यूंकि बहुत बढ़िया --